ये सब्जी मंडी का है यहाँ पर एक आदमी जा रहा है सामान लेकर यहाँ गाड़ी खड़ी है।

और सामने एक टावर डला है जहां से लाइट की राह लिकला है यहां ऊपर एक बड़ा टावर है।

यहाँ पर दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ए.सी. --

ये पहाड़ी इलाके का फोटो है यहां पर सामने दो पेड़ दिख रहे है और यहाँ सामने टहनी दिख रही है और ये पहाड़ के ऊपर से ली गई फोटो है।

और यहाँ पर काम चल रहा है स्टेशन का यहाँ सामने एक पैशन खड़ी है।